--बहोत बड़ा सा मैदान है मैदान में कुछ घास है जिनका रंग हरा है।

बहोत से लोग चढ़ रहे है बगल मे पेड़े है जिनका रंग हरा है सामने की ओर कुछ लोग चढ़ गए है।

है अगल बंगल में जिनका रंग हरा भरा है पीछे पहाड़ है पहाड़ में कुछ पेड़ पौधे हैरंग हरा--

एक रास्ता है रास्ते में बहुत पनिया भरी है जिसका रंग नीला है।

एक बड़ा-सा मकान है मकान के अंदर जाने का एक रास्ता है कुछ लोग बाहर खड़े है बड़ा-सा टाइल्स है जिसको अंदर ले जा रहे है अगल-बग़ल पेड़-पौधे है जो हरे-भरे है।